जैसा की आप देख सकते है यहाँ पर एक सलून है जिसमे एक ब्लैक कलर की चेयर रखी हुई है और सामने की तरफ एक आइना लगा हुआ है बहोत बड़ा।

इसमें ऊपर क्रॉस का निशान भी लगा हुआ है सामने की तरफ एक प्लर में भी क्रॉस का निशान है इसके चारों तरफ बोहोत बड़े-बड़े घने पेड़ पौधे लगे हुए है।

जैसा की आप देख सकते है यह चट्टानों से निर्मित बहोत प्यारी और बहोत--